वैट करा रहे हैं और --

और वाइट कलर के आगे का --

यहाँ पे कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है।

मकान है जो कि लोग खड़े --

और रेलिंग भी दिख रहा है। पेड-पौधे भी दिख रहे हैं।